मुझे इस तस्वीर में बहोत सारे लोग दिख रहे--

और कई सारा पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है।

सामने भी कई सारे बाइक भी दिख रहा है और कई सारे बोर्ड में दिख रहा है।

बहुत सारे फूल की पट्टी भी दिख रहा है।

बिल्डिंग की खिड़कियां और बहोत सारे दरवाजा भी दिख रहा है।

और कई सारे इलेक्ट्रिक वायर्स भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में बंबू का बहुत सारे घर दिखाई दे रहा--

मुझे तस्वीर में बहुत सारे कार्टून बॉक्स दिख रही है।

ऊपर में एक ए_सी भी दिख रही है।

कमरे में कई सारे स्टूल भी दिख रहे हैं और एक टेबल भी दिख रही है।

और बहुत सारी समोसे भी दिखाई दे रही है।

सामने में कई सारे काला प्लास्टिक भी दिख रहा है।

सामने में एक स्टेज दिख रहा है स्टेज की सीढ़ियां भी दिख रहा है।

आस पास बहुत सारे कपड़े भी दिख रहा है।

दुकान पर बहुत सारे मिठाइयां बहुत सारे केक बहुत सारे भुजिया बहुत सारे नूडल्स कप और बहुत सारे सामान दिखाई दे रहा है सामने में एक सड़क दिख रहा है।